इस पिक्चर में काफी सारे चाय के कप रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

व्हाइट कलर के हैं और कुछ कप कलरफुल नीचे जमे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कपो के ऊपर ब्लैक ऑरेंज और वाइट कलर का डिजाइन दिया हुआ है।

पानी में सूरज की परछाई भी नज़र आ रही है और किरणें दिख रही हैं।

के अंदर भी मशीनें दिखाई दे रही हैं और कुछ लोग भी बैठे हुए दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में एक लकड़ी के बेट का सरियाना बना हुआ रखा हुआ हे।

जैसे बने हुए हैं और काफी सारे लकड़ी का सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक काफी बड़ा रूम है जहाँ पर लकड़ी का एक टेबल काउंटर जैसा बना हुआ है।

कुछ एक्सरसाइज की मशीन भी पास में रखी हुईं हैं।

सफेद कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है और एक सर स्टूडेंट को पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

रोड पर ऐसा पानी सा भरा हुआ है और आसपास काफी सारे पेड़-पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक लाल कलर की बस दिख रही है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं।

ये एक शादी समारोह है जहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

आदमियों के पीछे कुछ मशीनें भी रखी हुई हैं और एक दिवार पर काफी बड़ा पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बस के बाहर भी कुछ आदमी चलते हुए नजर आ रहे हे।

और एक पोस्टर भी लगा है जिस पर कुछ बॉक्सर और एक्सरसाइजर के फोटोज़ लगे हुए हैं।

और पास में दो छोटी-छोटी मूर्ति भी रखी हुई दिख रही है जो कि मिट्टी की बनी हुई हैं।

नीचे ब्लू कलर के डिजाइन में पत्थरों का--

इस पिक्चर में एक सैलून की शॉप है जहाँ पर एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है।

कुछ डब्बों में सामान रखा हुआ है लकड़ी की कुछ पिलाईयां भी है और पास में दो कुर्सियां भी रखी है।

ट्रेन ब्लू और रेड कलर के डब्बों की तरह दिख रही है और स्टेशन पर काफी सारे लोग --

बैठे हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं।

मशीनें ब्लेक और ऑरेंज कलर की नजर आ रही हैं दिवार पर होम थिएटर और --

ये मशीन काफी बड़ी दिखाई दे रही है सामने की तरफ बहुत सारी रेत पड़ी हुई है और एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

ये एक ऋषव इंटरप्राइज़र की शॉप भी है जहाँ पर लोन पे फोन ब्याज पर आसान किश्तों में--

घर भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं और पास में काफी सारी जगह भी पड़ी हुई है।

होटल के ऊपर भी कुछ रूम बने हुए हैं और एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर होटल गेट वाय कर्नाटका लिखा हुआ है।

एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा हुआ पेट्रोल भरवा रहा है।

पास में कुछ टू व्हीलर गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं जो कि पेट्रोल भरवाती हुई दिखाई दे रही हैं।

कुछ पेट्रोल भरवा रहे हें और कुछ जाते हुए दिख रहे हें।

ये एक छत पर औजारों से कुछ काम कर रहे है और कुछ लकड़ी की बलियां भी लगी हुई है।

तीन तरह की फ्लेवर वाली आइसक्रीम रखी हुई दिखाई दे रही है आइसक्रीम में काफी सारी --

पास में कुछ अ कुर्सियाँ बैठने के लिए लगी हुई हैं और सामने एक टेबल भी लगी हुई है ऊपर की तरफ कुछ फुग्गे--

ये एक टेलर की शॉप हैं यहां पर कुछ सिलाई की मशीनें रखी हुई हैं।

और कुछ व्यक्ति सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं शॉप के ऊपर कुछ घर भी बने हुए हैं।

और कुछ घास भी लगी हुई है कुछ पेड़ पौधे बड़े और कुछ पेड़ पौधे छोटे नजर आ रहे हैं।

ये तीन चार कुर्सियां नजर आ रही है ऊपर की तरफ कांच लगे हुए हैं और ऊपर--